उस तरह का रड भी लगा हुआ है उस तरह के बेग आदमी टाँगे हुए हैं।

उस तरफ का भी लगा हुआ है।